तस्वीर में बहुत सारे फल दिखाए गए हैं जैसे कि अनार केला सेब संतरा अंगूर किवी भी जो सफेद रंग के कागज पे रखे हुए हैं।

बहोत सारी मच्छिया नीले कारपेट पे रखी हुई है।

जिसमें बहोत सारे पैकेट टंगे हैं चिप्स कुरकुरे के।

एक वॉशरूम दिखा रहा है जिसपर मिकी माउस बना है।

कमरों के बाहर बहुत सारा पोस्टर और भगवान की फोटो लगी है।

इस तस्वीर में मेंस सलून दिखाया गया है।

लाल रंग के बहोत सारे शीशे लगे हुए हैं।

बाहर पुजारी जी बैठे है और लोग उनका आशीर्वाद लें रहे --

क्लासरूम में बहुत सारे ब्राउन रंग के बैंच रखे हुए हैं।

एल_जी के शोरूम लाल रंग में लिखा हुआ है।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

दुकान में बहुत सारे फ्रिज दिखाई दे रहे हैं नीले लाल सफेद।

ज्वेलरी शॉप में कुछ कस्टमर भी बैठे हुए हैं।

दूसरी तरफ टेबल के दुकानदार बैठे हुए है।

और बाहर की तरफ बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

घर के बाहर बहोत सारे खिड़की दरवाजे दिख रहे हैं।